इस फोटो में एक मकान का काम लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर सेंटिंग लगी हुई है लकड़ी लगी हुई है पाइप लगे हुए दिखाई दे रहे --

ट्यूब लाइट और यहाँ पर बहुत सारे पेपर रखे हुए हैं।